और उनके कुछ आदमी बैठे हुए हैं और एक कोन्टर भी रखा है।

और पहाड़ों में कुछ पेड़ और कुछ पौधे लग रहे हैं।

यह एक जिम है और इसमें कुछ मशीने रखी हुई है।

और कुछ यहां पे स्टील की टंकी भी रखी हुई है।

और ऊपर एक पंखा भी लगा है।

और यहां पे कुछ लाइट भी लगी है और कुछ पेड़ भी लगे हुए है।

यहां पे दो दुकान बनी हुई है और उनके ऊपर कुछ बोर्ड लगे हुए हैं।

मोटरसाइकिल के पास में एक गेट भी लगा है और कुछ गमले भी रखे हुए।

और इसके बाहर कुछ पेड़ लगे हुए हैं और एक स्कूटरी भी खड़ी हुई है।

और इसमें बैंक के अंदर कुछ मशीने भी रखी हुई है।

यह एक शोरूम है और इसमें बड़ा सा काउंटर पड़ा हुआ है।